एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है साइड में एक नदी है बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और कुछ घर भी --

एक यहा एक रोड पर टांगे वाला खडा हुवा हे यहा व्यक्ती फोटो खिचवा रहा हे साइड में ग्राउंड पडा है।

अगल-बगल में टेड़ी रखे हुए हैं बीच में ट्रॉफी रखी हुई है यहां पे बहुत बड़ा हॉल है और यह व्हाईट और ग्रीन दिख रहा--

यहा लाइन से कार खड़ी हुई है यहा एक व्यक्ति कार खोलकर उसको सुधार रहा है।